इस क्रिसमस ट्री के चारों तरफ गिफ्ट दिखाई दे रहे हैं जो कि पैक्ड हैं|

यह फोटो एक सड़क किनारे की है यहाँ पे एक बड़ी सी होरडिंग लगाई गयी है जिस पे लक्ष्य एडुकेशन फॉर यू का बैनर लगा हुआ है यहाँ।

मुझे फोटो टम्बल ड्राई लॉन्ड्री ड्राइ क्लीनस वाले की है जिसकी बड़ी सी बिल्डिंग बनाई गई है ।

यह फोटो नदी की है सूर्य की किरणे नदी में प्रतिबंदित हो रही है।

यह फोटो एक नदी की है नदी के बगल से एक रास्ता गया है।